और अपना हेल्थ घटाते हैं लोग जिम हर बहुत सुंदर लग रहा है न्यू लग रहा है बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये ।

और माइक में अनाउंस कर रहा है एक जेंट्स है और म्यूजिक बना रहा है एक ।

क्योंकि इसमें खड़ा हो गया है लोग पुल जैसा लग रहा है पूल के नीचे सब खड़े हो के सेल्फी ले रहा है लोग अच्छा से।

ये सिधरी मच्छरी है जो रखा गया है काट-काट के रखाएल है।

ये वैक्सीन लग रहा है जो वैक्सीन कोरोना मे भू पूरा महामारी में उम पूरा छाया था सबको डिप्रेशन में डाला था।